यह एक देखने में बहुत अच्छा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप गाड़ी पेट्रोल पंप वाला गाड़ियों में जीपों में पेट्रोल डाल रहा है।

--साफ़ सुथरा प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जंक्शन भी लिख हुआ है।

ये एक पेट्रोल ये ये एक एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म पे बिलासपुर दिखाई दे रहा है और वहाँ पे दो तीन ट्रेनें भी रखी है यात्रीयों के स बहोत सी भीड़ भी दिखाई दे रही --